जैसे मुकरने की तैयारी कर रहे हैं लाइट्स लगी हुई है।

और क्योंकि जैसु के बाजू में घास पूस है।

लाइट्स लगाई हुई है फूल है लाल कलर के और पिले कलर के।